यहां पर गाय भैंस बकरीद आदि दिखाई दे रहे हैं बीच में एक सड़क जा रही है।

तथा पीछे की ओर केले दिखाई दे रहे हैं और इसमें अनार एप्पल आदि फ्रूट रखे हुए हैं।

तथा कुछ लोग यहां पर सब्जी खरीदने आए हुए हैं।

इसमें बहुत से डिब्बे रखे हैं।

यह एक शादी के गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है।